बहुत ही खूबसूरत सी सब्जी मंडी दिखाई दे रही है बहुत सारे केले के पत्ते पे बहुत सारी सब्जियों को रखा गया है बहुत सारी टोकरिया दिखाई दे रही है बहुत सारे बॉल दिखाई दे रहे है।

एक वजन का मशीन भी दिखाई दे रहा है लोग भी दिखाई दे रहे है आलू प्याज खीरा टमाटर और भी बोत सारी सब्जियां दिखाई दे रही है।

यह अलमारी के बाहर कुछ अ एडवरटाइजमेंट कागज की एडवरटाइजमेंट बना के लगाए गए है।

खूबसूरत सी पहाड़ दिखाई दे रही है जो कि काफी ऊंचाई पर है बहोत सारे लोग इस पर चढ़ रहे हैं इसमें छोटे-छोटे घास भी उगे हुए है सूखे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत ही खूबसूरत सी सीढ़ी दिखाई दे रही है सीढ़ी में बहुत सारी ग्रिले भी दिखाई दे रही है एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे टावरे भी दिखाई दे रही है तारे भी दिखाई दे रही है।

दो प्लस की पक्के भी दिखाई दे रहे है यहा कि ज़मीने पक्की है मार्बल बिछे हुए है सामने ग्रीले भी दिखाई दे रही है बहुत ही खूबसूरत चर्च है।

बहोत ही खूबसूरत सी आर्ट एंड क्राफ्ट की पेपर दिखाई दे रही है बच्चे बहोत मेहनत किए हुए हैं और ब्लू कलर रेड कलर येलो कलर वाइट कलर और ऑरेंज कलर ग्रीन कलर के बहोत सारे आर्ट के पेपर --

बहुत ही खूबसूरत सा लोहे का दुकान दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत सारी लोहे की--

इस्मानी की सामानें बनाई जाती है बहुत सारे लोहे के नट भी रखे गए है बहुत सारी लोहे की कढाईया भी दिखाई दे रही है बहुत सारे लोहे के बहुत सारी सामाने दिखाई दे रही है और अअअअ बहुत सारी स्ट्रोपी भी दिखाई दे रही है।